और सब खड़े है लडीस साइड में।

पार्लर पार्लर दिख रहा है जेंट्स का पार्लर है एक आदमी खड़े है चेयर लगा हुआ है।

वहाँ पे एक बाइक खड़ी है । का पेड़ है । घास फूस है ।